जो की किराने दुकान में हैं यहां पर बहुत सारे कूट में सामान रखे गए हैं और यहां पर दो लेडिस एवं एक जेंट्स भी दिख रहा है।

तस्वीरें भी है और यहां पर दो पर्दे भी लगाए हुए हैं जिसका रंग।

और यहां पर बहुत सारे सामान रखे गए हैं।

यहां पर एक आदमी भी है जो की बाइक के ऊपर बैठा हुआ है।

यह एक दुकान का दृश्य है जहां पर बहुत सारे दुकान है।

ओ_एस_ओ_एम यहां पर एक पतंजलि का पोस्टर भी टंगा हुआ है और उसका मुंह ब्लर किया गया है।

एवं छोटे छोटे पेड़ भी दिख रहे हैं यहां पर बहुत सारे खंभा भी है।

यहां पर सीढ़ी भी लगाया हुआ है और रेलिंग भी लगाया हुआ है एवं यहां पर दो चोंगा भी दिख रहा है।

एवं यहां पर एक खजूर का पेड़ भी दिख रहा है जो कि बहुत बड़ा है।

और बाहर में बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे भी लगाया हुआ है।

यह एक मैदान का दृश्य है जहां पर घर बनने के लिए काम हो रहा है एवं यहां पर बहोत सारे आदमी भी हैं।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

गुपचुप का डब्बा भी दिख रहा है जो की एक शीशे में पैक है।